और एक के तो सपेद अ-अ साड़ी और लाल बिलाउज पैन रखा है और दूसरी का वो पहन रखा है।